यहां पर शादी के लिए डेकोरेशन किया हुआ है।

यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं।

काफी सारा रोड भी है। लाइटे लगी हुई--

बिल्डिंग बन रही है यहां पर बाइक खड़ी हुई है।

शीशे का वर्क किया हुआ है शीशा लगा हुआ है खिड़कियों में--

तसला पड़ा हुआ है सरिये है पेड़ है।

खेत है यहाँ पर एक आदमी फोटो ले रहा है।

मोबाइल्स रखे हुए हैं मोनो मोबाइल जोन --

का पोस्टर लगा हुआ है एड्रेस दिया हुआ है।

घास लगा हुआ है हल्का हल्का पेड़ लगे हुए हैं।

यहां पे टोफिंया रखी हुई है चॉकलेट रखे हुए हैं कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है।

बहोत ही अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ है कारपेट बिछा हुआ है।

मजदूर मजदूरी कर रहे हैं व्यक्ति खड़ा हैं।

शिव जी की मूर्ति रखी हुई है लाइटें लगी हुई हैं।

लड़कियाँ अपनी सेल्फी ले रही--

एक ये फोटो ले रहा है लाइटे लगी हुई है।

पहाड़े दिख रही हैं घास लगा हुआ हैं।

गेंदे के पत्तियां बिखरी हुई हैं।

लड़का बैठा हुआ है पानी का समंदर देख रहा है।

नकली के ये मिट्टी के बने हुए हैं खिलौने।

कच्चा धरती है गाय खड़ी है।

मंदिर बना हुआ है घंटियां लगी हुई हैं।